और उसके साथ है खीरा और प्याज सलाद है यहाँ पे दो स्पूंस रखी हुई हैं।

और इस दुकान में उपर एक पंख टंगा हुआ है जो की लोग आएंगे उनके गर्मी होगी तो पंख ऑन कर के शॉपिंग करेंगे हमें यहाँ शॉपिंग करने के लिए सारी चींज़े हैं।

और यहाँ वर्कर्स बोहोत है और पीछे पेड़ भी बोहोत है जोकी हरे रंग की है।